तस्वीर में दिख रही जगह एक होटल के अंदर की जगह है जहाँ पे आप अपने दाई ओर एक रिसेप्शन ऑफिस देख सकते हैं ।

इस फोटो मे दिखाई दे रही दो दुकाने एक अ खंडर टाइप की लगती हैं या फिर किसी शॉप की लगती हैं छोटी ले --

ज्यादातर शायद ये तस्वीर यहीं दिखाने के लिए खींची गई है कि हम कितनी गंदगी फैलाते हैं हमारे समुन्द्र में।

जिसमें बच्चों को पढ़ने की ट्रेनिंग मिलती है जहां पर वह बैठकर अपने पेपरो कि तैयारी कर सकते हैं ताकि उनके पेपर अच्छे से बीत जाए ।